ये एक फैक्ट्री है और जहाँ यह दो लोग काम कर रहे है और --

ये एक दूध की डेयरी है जिसका नाम अनमूल है यहा कुछ बच्चे खड़े हुए है हाथ मे तिरंगा पकड़े हुए और फोजी की ड्रेस पहने हुए और एक लड़की ने--

यहां मेहनत करी रही जा रही है अपने सर पर ट्रक में डाला जा रहा है ढेरो के ढेर कटो के रखे पड़े है यहां लोग मेहनत कर के नंगे पाँव--

सभी ने एक समूह रखा है अलग अलग जगह पर बैठ के रंगोली बनाई जा रही है बड़े ही सुन्दर रंगो से--

अलग अलग चीज़ो का प्रयोग किया गया है और एक शटर के गेट के अंदर चार दिवार के अंदर बंद हो के यहां कार्य हो रहा है।

ये रात का वक्त है और छोटि छोटि घास है मिट्टी पड़ी हुई है।